कुछ लोग आगे खड़े हैं।

इसके बाहर ए_सी भी लगा हुआ है।

इस पैलेस को काफी सुंदर डेकोरेट --

इसके ऊपर लैंड वन पर कार व्हीकल --

ये तस्वीर पार्क की है।

इस तस्वीर में दो डॉक्टर --

इनका मोबाइल नंबर नाइन डबल सेवन नाइन ए--